यहाँ पे स्कार्पियो और बड़े - बड़े है ये देखने में बहुत अच्छा लग रहे है और कुछ लोग खड़े हुए।

इसके आगे तरह-तरह के मशीन लगे रखे हुए हैं।

यहाँ पे एक बस लगा हुआ है ए बस का कलर वाइट है|

तीन चार गो बेड लगे हुए हैं।

बड़ा जैसा पेड़ दिख रहा है |

एक स्टील का सामान बन रहा है।

यहाँ नीचे कुछ मिट्टी दिख रहा है।